यह एक बहुत सी सुंदर होटल है।

एक झालर भी लगाया गया है।

यह एक संगीत का घर है यहां पे एक व्यक्ति--

एक आदमी बैठे हुए हैं और गटार--

और यहां पे लाइट भी--

है और इसके बहार में एक बाइक भी लगी हुई हैं और--

न्यूज़ पढ़ रहे हैं।

दुकान लग रहा है और यहां पे एक कैमरा भी लगाए गए हैं।

और बगल में एक हाथी का भी चित्र दिख रहा है और--

और यहां पर बहुत सामान मिलता है जैसे की--

स्टार जैसा बना हुआ है और --

और इसमें पत्ती भी है और करा--

थी लाइट लगा हुआ है।

और खिड़की के बाहर में छज्जे भी है।

यह एक बहुत ही सुंदर घर है घर को पीला--

यह एक एक पराठा है पराठा में--

दूर दूर में पहाड़ भी है और बादल भी।

अति सुंदर दिखने में लग रहा है।

इसके बाहर में बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए है और एक--

वे बहुत ही बैलून सजाए गए है।